यह एक मोबाइल शॉप है जिसमें तीन आदमी है।

और बगल में एक गोल गोल पिलर बना हुआ है बहुत सारा।

और इसके सामने एक पोल भी है और सामने एक हाता है जिसके अंदर पेड़ पौधे हैं।

और इसमें बच्चे झूल भी रहे हैं और इसके सामने एक आदमी--

सामने तीन आदमी जो जांच करवाने आई हुई है।

पर्दा भी लगा हुआ है जिसका कलर ब्लू है।

और एक पंडाल भी लगा हुआ है। ऑरेंज कलर का प्लास्टिक और इसके बग लेफ्ट के बगल साइड बहुत सारे गाड़ी है जो फ़ोर सेल लगे हुए हैं।

और इसमें एक हाइवा है बहुत सारा हाइवा है।

आदमी भी हैं और राइट साइड कुर्सी लगाया हुआ है

और इस मोर का कलर ब्लू है।

इस पिक्चर में तीन मुर्गा है और इसमें एक लूंगी भी है और एक कला प्लास्टिक है।

यह एक फाउंडेशन का परचार हो रहा है।

यह एक छोटा सा घर है जिसमें करकट लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे बैलून भी लगे हुए हैं जिसका कलर व्हाइट और ब्लू हैं।